यहाँ पर सामने मे बड़ा सा घर दिख रखा है। घर के आगे मे भी बोर्ड लगा हुआ है।

सामने मे रेलवे ट्रैक है एक जा रही है जोकि ब्लू कलर का ट्रैन है।

उसका आगे का बोनट खुला हुआ है।

कप मे सूप रखा है चम्मच रखे हुए हैं अंदर मे कुछ पेपर रखा हुआ है।

और पीछे में बहुत लम्बे-लम्बे पोल दिख रहें हैं जिस पे तार पास किया हुआ है।